दिखाई दे रहा है। सैलून काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। सैलून को काफी अच्छे से सजाया गया है। सैलून में एक टीवी स्क्रीन नजर आ रही है।

'' दुकान नजर आ रही हैं दुकान के बाहर आयुष बुक स्टोर लिखा हुआ हैं'''' अंदर काफी सारा सामान नजर आ रहा है |''

यहाँ पर एक पंखा दिखाई दे रहा है। सामाने कुछ पेन के डब्बे दिखाई दे रहे हैं। सामाने एक शटर नजर आ रही --

दिखाई दे रहा है। स्टेशन काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। स्टेशन पर कुछ प्लेटफार्म नजर आ रहा हैं। यहाँ पर एक टीन शेड नजर आ रहा है। पूरी टीन शेड पर मुज़्ज़फ़्फ़रनगर लिखा हुआ है।

सारी नाव दिखाई दे रहीं हैं। नाव काफी बड़ी नजर आ रहीं है। यहाँ कुछ नाव में कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ काफी बडे दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग का कलर सफेद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफी सारी जालियां नजर आ रही हैं जालियां लोहे की दिखाई दे रही हैं। सामने कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आ --

यहाँ पर कुछ पौधे नजर आ रहे हैं यहाँ पर काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं पेड़ काफी हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं।

सिलेंडर रखा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफी सारी बुक्स नजर आ रही हैं। दुकान काफी बड़ी नजर आ रही है। दुकान के अंदर काफी सारी लाइट दिखाई दे रही हैं। दुकान के अंदर काफी सारी शेल्फ दिखाई दे रहा --

दुकान दिखाई दे रहा हैं रेस्टोरेंट काफी बड़ा नजर आ रहा हैं रेस्टोरेंट पे एक बोर्ड लगा हुआ है | बोर्ड में काफी सारी फोटो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एक एसी नजर आ रहा है |

पम्प दिखाई दे रहा हैं पेट्रोल पम्प पर बोर्ड लगा हुआ है | बोर्ड पर रिलायंस लिखा हुआ है | यहाँ पर एक कार नजर आ रही कार सफेद कलर --

घर के बाहर एक खम्बा दिखाई दे रहा है। खम्बे में का काफी जादा तार दिखाई दे रहे हैं। सामने एक रोड दिखाई दे रही है। रोड पर कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं।

पीछे काफी सारी रोड दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं। पेड़ काफी बड़े नजर आ रहे हैं। पेड़ काफी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे खंभे दिखाई दे रहे हैं।